बैंक के बैनर ऊपर बैनर लगा हुआ है जिस पर पंजाब नेशनल बैंक लिखा हुआ है।

स्टेचयु इसमें वाइट कलर का दिखरा है।

इस पिक्चर मे मुझे एक कॉरीडोर दिखाई दे रहा है । कॉरीडोर की दीवारें मुझे सफेद कलर की दिखाई दे रही हैं।

आसपास मुझे कुछ चट्टानें दिखाइ दे रही हैं। चट्टानें पत्थर की हैं।

इस पिक्चर में मुझे एक जिम दिखाई दे रहा है। इसमें मुझे एक्सासाइज की मशीने पड़ी हुई दिख रही है।

येलो बलून और व्हाइट बलून भी दिख रहे हैं।

जिसमे व्हाइट कलर का शर्ट पहना है और नीचे और ब्राउन कलर का पेंट पहना हुआ है ऊपर की तरफ आसमान दिखाई दे रहा है ।

है इसमे एक लड़के ने व्हाइट कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है सामने की तरफ मुझे एक का पोस्टर दिखाई दे रहा है।

गेट के अंदर एक कार दिख रही है जोकि सफेद कलर की है। गेट के बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं।

स्टैचू के पीछे एक बिल्डिंग दिख रही है। बिल्डिंग में काफी सारी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

इसमें पीछे की तरफ मुझे पेड़ दिख रहे हैं जोकि ग्रीन कलर के हैं और इसमें एक झांकी भी बनी हुई दिख रही है।